और यहाँ पे काफी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है।

इस मॉल में कुछ पार्टी ओटी जैसा माहौल दिख रहा है जिसमें बैलून उलून वगैरह भी --

पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं जो बहु काफी हरियाली छाए हुए हैं।

बैठने के लिए भी एक चेयर जैसा है इसमें --

ये एक फल का दुकान है जिसमें बहुत सारे फल बिक रहे हैं जैसे मौसमी अनार--

आगे कुछ लोग भी दिख रहे हैं जो इसको खरीद रहे हैं।

ऐसाठी जंक्शन है जिस पर एक ट्रेन चल रही है।

जिसमें एक बाइक आगे प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है।

यहाँ पे एक दो आदमी हैं जो ला जो बाइक को --

सामने कुछ फूल लगाए गए हैं जो बहुत अच्छे से फुलाए हुए हैं।

जिसको अभी नीचे से जड़ से निकाला जा रहा है जगह-जगह उसका --

और उसी में एक छोटा सा टंकी जैसा है इसमें लग रहा है पानी वानी --

एक आदमी अपना बाल कटवा भी रहा है एक आदमी उसको काट रहा है।

बाल काटने का जो भी सामग्री है उसको यहां पे रखा गया है।

लाइट उईट इ सब का व्यवस्था अच्छे ढंग से रखा गया --

ये पूजा घर है जिसमें बहुत सारे फोटो --

अंदर का वातावरण है बहुत खुला दिख रहा है क्योंकि चारों तरफ खिड़कियाँ हैं जिससे लाइट आ र --

इसमें चेतावनी दिया गया है शराब एक जगह गेट खुला हुआ है इससे एक आदमी निकल भी रहा है।

लाइट आ रहा है और --

एक पर्दे के ऊपर एक पर्दे एक पर्दे के ऊपर एक पर्दे लगाए गए हैं।

उसके पीछे दुकान भी है और दो लोग वहाँ पे आपस में बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं।

उसके नीचे दो बाइक लगे हुए हैं और उसमें लग रहा है ए_सी भी लग --

दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और दो तीन लोग नीचे बैठ के कुछ कर रहे हैं।

लोग हैं लड़के लड़कियाँ हैं।

उसकी साइड में प्लांट्स लगाए गए हैं जो दिखने में काफी खूबसूरत दिख रहे हैं।

साउंड माइक बिक रहा है।

ये मुर्गी फर्म है जिसमें बहुत सारे मुर्गियों को लाइन से।--

कुछ लोग वहाँ पे ए_टी_एम का यूज़ करने के लिए गए हैं और अपना बाइक भी लगाए हैं बाहर में एक आदमी खड़े हो कर किसी चीज़ का इंतजार भी कर रहा है।

और उसके सामने जस्ट रोड भी है।